और आसमान साफ नजर आ रहा है।

नैशन नजर आ रहा है जहा बहुत सारे जीमनसियम इक्विपमेंट नजर आ रहे है फेन नजर आ रहा है वाइट कलर का वही पे एक व्यक्ति दिख रहे है।

हॉल दिख रहा हैं इसमे टी.वी नजर आ रही है कलर व्हाइट कलर से टेबल रंगा हुवा है।

कुछ लोग नज़र आ रहे है और साइकिल नज़र आ रहे है। और बाइक नज़र आ रही है। जहा पर एक व्यक्ति हेलमेट पहने हुए है।